मंदिर में गिरिल लगी हुई है जो लाल रंग की है। मंदिर के आस-पास बहोत सारे झंडे लगे हैं और ये एक प्राचीन मंदिर है।

टाइल से रस्ते बनाए हुए हैं और आस पास छोटे-छोटे घास उगे है और छोटे-छोटे पेड़ पौधे हैं। बादल में बहोत सारी काली बादल छाई हुई है।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

कीर्तन कर रहे है और सभी लोग ऊपर में शर्ट नीचे में लुंगी पहने हुए हैं कुछ ले --

और उस पे स्टिकर अलग अलग कलर की लगी हुई है जैसे ग्रीन पिंक और वो बेट पे --

टोन एसेस एडिडास लिखा हुआ है।

और एक औरत खड़ी है जो एक लड़के बड़ी सी चाभी लेकर एक औरत को दे रहे हैं और साइड में स्कूटी --

यह एक चित्र है। जिसमे एक कॉलेज है। जिस कॉलेज का नाम एचडी ग्रुप है। कॉलेज के बाहर में कार गाड़ी --

छेद कर रहे हैं और एक हथौड़ी रखी हुई है और --